कुछ काम कर रही हैं कि युहीं कुछ बना रहे हैं यहाँ पर बहोत से सामान रखा कटर वगेरा भी रखी हुईं हैं वो भी पेंसिलओं से बना रही हैं कुछ ये ब्लैक कलर के कपड़े पहने कोई--